और कई सारे खाने के व्यंजनों की तस्वीर बनी हुई है।

रोड नजर आ रही है रोड पर कुछ वाहन दिख रहें हैं।

मकान की ऊपर बोर्ड लगा हुआ हैं ।

एक खम्बा दिखाई दे रहा है।

पीछे कुछ मकान दिख रहें हैं ।

कुछ मकान दिख रहें हैं जिनमे खिड़कियाँ नजर आ रहीं हैं।

कुछ लोग नजर आ रहें हैं।

रोड नजर आ रही है।

एक बड़ा हॉल नजर आ रहा है।